और बहोत से घर भी दिख रहे हैं।

कुछ लाइट में इचिंग का एरिया है।

बहुत सारी कुर्सियां टेबल हैं।

कुछ पंखे भी लगे हुए दिख रहे हैं।

इसमें बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिख रही हैं।

इसमें एक स्टेशनरी दुकान बनी है।

इसमें बड़ी बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है।

आस पास बड़े बड़े पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

सोफे कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

बहुत सारी लाइटें लगी हुई दिख रही हैं।

इसमें बहुत बड़े-बड़े पैड़ दिख रहे हैं।

आस-पास बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

बड़ी बड़ी हिलोजने लगी हुई दिख रही है।

जिसके आसपास कुछ बिल्डिंगे बनी है।

बहुत सी गाड़ियां भी खड़ी हुई दिख रही हैं।

बड़े-बड़े हसफे में लिखा है।

और आसपास बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

दो कुर्सियां लगी हुई हैं।

आसपास बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं और बड़े-बड़े घर दिख रहे हैं।

इसमें बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई हैं और बहुत से ड्रेसेस भी दिख जो डमी पर टंगी हैं।